इस फोटो में एक मशीन रखी हुई है और एक औरत है और एक आदमी है जो पेपर पर कुछ लिख रहा है गरीब मजदूर खड़ा हुआ है।

ये फ़ोटो एक स्कूल का परफॉर्मेंस की फ़ोटो है जहाँ सारे डी.जे. रखे हुए हैं।

इस फोटो में दो मजदूर काम कर रहे है। ईंटे लगाने का नीचे कई सारे ईंटे गिरे हुए है और बालू भी गिरी है।

यह फोटो एक मंदिर की है जहां ढेर सारे भगवान हैं कुछ फोटोस हैं कुछ मूर्तियां हैं और एक पंडित जी पूजा कर रहे हैं।

ये पिक्चर एक रोड रैली की है।

वो कलर पीला है और ये बीच में केले के पौधे भी लगाए --

ये स्टेज पे दूल्हा दुल्हन खड़े हुए हैं और उनके परिवार वाले भी खड़े हैं और फोटोज में लोग विडिओ बना रहे हैं।

और दो लोग नीचे की तरफ पानी का नजारा ले रहे है।

और कुछ दुरी पे हाथ से बनाया गया एक केम्प टाईप का है कुछ।